जिसके कारण आप अपने घर पे बैठ के सामान मंगवा सकते हैं।

एक आदमी चल रहा है और एक बुजुर्ग महिला किसी का इंतजार--

अपना काम करवाने के लिए यहां पर आए हुए हैं और ऑफिसर का वेट कर रहे हैं।

भैया अ कार के अंदर पेट्रोल को डाल रहे हैं।

काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं इस पारक के पास।

हां और सीलिंग फैन लगे हुए हैं।

इस पारक में कोई तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

सामने ऑरेंज कलर के स्टूल बिछाए गए हैं।

टुमारो अ इसका मतलब ये है कि अगर आज स्ट्रगल करते हो तो कल आप इसकी ताकग बन जाएगी।

सीखाते हैं और यहां पर आप ऑनलाइन कंप्यूटर भी सीख सकते हैं मतलब आप घर बैठ कर भी कंप्यूटर कोर्सेज ।

का व्यू है इस हॉस्पिटल के बाहर कई लोग विजिट किए हुए हैं इस हॉस्पिटल के आसपास काफी अच्छा वातावरण है यहां पर काफी--

यह एक शूज का शोरूम है ई शू--

इस शोरूम में कई तरह के शूज़ लगे हुए हैं जेंट्स और लेडीज दोनों--

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान है।

आप अपनी चोइस के एकॉर्डिंग यहां से परचेज --

जब आयुर्वेदिक अवेलेबल है आप यहां पर--

कुछ लोग विजिट करते हैं और काफी अच्छा रिस्पांस उन्हें मिला हुआ है ये अच्छा है विजिट करें।